दो तीन लाइटें दिखाई दे रही है बगल में चेयर्स नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं चेयर में टेबल में बहोत सारे प्लेट्स लगी हुई हैं।

जहां पर दो तीन गाड़ी आते जाते हुए नजर आ रही है रस्ते के किनारे जो है बहोत सारी लकड़ियां रखी हुई है।

और मस्जिद का रंग जो है वो ग्रीन और व्हाइट पे है।